यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है । जो चित्र बनाने का प्रयास कर रहा है । ये प्लास्टिक जैसा कुछ --

यहाँ पे ऑफिस जैसे यह एक रात है और एक ऑफिस जैसा दिख रहा अंदर एक लाइट जल रहा देखने मे --

यहाँ पर बोहोत सारे व्यक्ति हैं जो ढोल बजाने की कोशिश कर रहे हैं। बोहोत सारे लेडीस हैं जो--

और बोहोत सारे घास दिख रहे हैं। लग रहा है की यह एक गाव है। यह बोहोत ही खूबसूरत गाव ।

इस दीवार के ऊपर उ उस साइड एक बहोत ही अच्छा घर है।

कहीं-कहीं पे कुछ अलग ही डिफरेंट कलर डाला गया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है एक शटर डाला गया है जो अलग ही लेवल का है।